यहां हमें ढेर सारे झू बड़े बड़े झूला दिखाई दे रही है जो--

व्हाइट कलर की है और इसके आसमान का कलर येलो है और पर्पल है।

यहां हमें एक बड़ी सी पुल दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर की है और सड़कें दिखाई दे रहे जो मिट्टी कलर की है।

और इसके एक दीवार का कलर चॉकलेट कलर इसमें ढेर सारी छोटी छोटी व्हाइट कलर की लाइटें लगी हुई है।

जो व्हाइट और ब्लू कलर का है और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर की है।

और इसे बाउंड्री का कलर पीला है इसके जमीन का कलर ग्रे है और मिट्टी कलर है।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

यहां हमें एक घर दिखाई दे रहा है जो व्हाइट और ब्लू कलर की दिखाई दे रहे हैं इसके सड़के का कलर मिट्टी कलर है।

और एक पोल दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है और बगल में एक बॉउंड्री रही दिखाई दे रही है।

और आदमी सामने एक आदमी है जो व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है और रेड कलर का और ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ हमें एक घर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है जिसमें ब्लू कलर के पोस्टर लगे हुए है जिसमें वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इसके जमीन का कलर ग्रे है और कुछ लोग दिखाई दिए दे रहे दे रहे हैं जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

यहाँ हमें एक मशीन दिखाई दे रही है जो ग्रीन और ऑरेंज कलर की है ढेर सारी बोरियां दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं जैसे ब्लू है ब्लैक है ग्रीन है और व्हाइट कलर की है।